यहाँ पे एक लड़के हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ सामने में दो दुकान है जिसका दर --

बहुत सारा जिम करने की मशीन रखी हुई है जैसे की मैं देख पा रही हूँ इस मशीन --

नीला पीला हरा बैगनी रंग का है जैसे की मैं देख पा रही हूँ सामने --

सामने में एक आदमी है जो किताब बेच रहा है जैसे की मैं देख पा रही हूँ वो आदमी --

वो आदमी ने चश्मा पेहना है जैसे की मैं देख पा रही हूँ पीछे --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक दिन का समय है जैसा कि मैं देख पा रही हूं सामने में हरी भरी घास है जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे पहाड़ है जैसा कि मैं--

इस दीवार का रंग गोल्डन रंग का है जैसे की मैं देख पा रही हूँ इस दीवार --

सफ़ेद कलर का टॉप और नीला कलर का जीन्स पेहना है।

बहुत सारी चीज रखी हुई है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर फ्रूटी भी रखी हुई है जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ-कुछ सूखे-सूखे पेड़ हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ --

सामने में कपड़े धोने की जगह है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे कचरे हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक नदी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं।

कुछ बना हुआ है जैसे कि‍ मैं देख पा रही हूं सामने में पत्‍थर रखे हुए हैं जैसे के मैं देख पा रही हूं अन--

जैसे कि‍ मैं देख पा रही हूं यह एक दिन का समय है जैसे कि‍ मैं देख पा रही हूं यहां पे आकाश का रंग हल्‍का प--

जैसे कि मैं देख पा रही है एक दिन का समय है जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने में एक मिस्त्री है इन्होंने सफेद रंग का कपड़ा पहना है।

पंडाल में एक झुमर लगा हुआ है और झूमर में लाइट लगी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक सैलून है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह सैलून में गेट बने हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर खिड़की है खिड़की लोहे के हैं।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ सामने जो लड़का बैठा हुआ है वो सफ़ेद रंग का टी-शर्ट औ--

दो झंडे है जिसका रंग आरेंज रंग का जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक सामने हरे भरे पेड़--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर गन्ने के पेड़ रखे हुए हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ इधर छोटे छोटे बच्चे हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घर बना हुआ है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है जैसे की मैं देख --

यहां पर सामने में हनुमान जी के मूर्ति रखा हुआ जैसे कि मैं देख पा यहां पर बहोत सारी थाली रखी है जिसमें प्रसाद लगाए हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये ऑटो है ऑटो का रंग लाल रंग का है जैसा की मैं देख पा रही हूँ पीछे एक घर बने हुए हैं जिस का गेट --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यह एक रूम है जैसे की मैं देख पा रही यहाँ पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं जैसे की मैं देख पा रही --

अ सामने में बहोत सारी चेयर हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ उस साइड में एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई जैसे कि मैं देख पा रही हूँ।

इस रो में बहुत सारे लाइट है जिसका रंग गोल्डन रंग का है जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस रूम के ऊपर का रंग नीला रंग का है जैसा कि मैं देख पा रही हूं।

दो स्कूटी लगे हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं अंदर बहोत सारे कपड़े हैं।

वैसे की मैं देख पा रही हूं यह सुबह का समय है जैसे की मैं देख पा रही हूं एक मंदिर है जैसे की मैं देख पा रही हूं--

इस मंदिर के सामने सीता राम मंदिल लिखा हुआ है ऊपर में जो दो डिजाइन बने हुए हैं उस --

उसमें लिखा है भैरव मंदिर जैसे कि‍ मैं देख पा रही हूं सामने बहुत से हरे-भरे पेड़ है जैसे कि‍ मैं देख पा रही हूं पी--

पीछे पहाड़ है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ पहाड़ में बहोत सारे पत्थर रखे हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही यह एक सुबह का समय है जैसा कि मैं देख पा रही यहां पे सामने में एक इंडियन फ्लैग है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे औरत और लोग खड़े हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ --

यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां है जैसे की मैं देख पा रही हूँ इस खिड़कियों का ना --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

इस गार्डन के पीछे बहुत सारे घर बने जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे ह--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये बहुत बड़ा सा होटल है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ --

भरा गया हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ सामने में एक बाइक --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ सामने तीन मॉडल खड़ी हैं जिसको साड़ियाँ पहनाई गई है और एक को --